और ये हमे एक अलमारी मे बहोत सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हे।

वहीं हमें इस रेलवे स्टेशन के पीछे एक पीले रंग का घर भी दिख रहा है। वहीं हमें एक खम्भे पे लगी लाइट भी दिख रही--

ये फ़ोटो एक मेकेनिक का है जो एक पाइप को ठीक कर रहा है ।

जिसके सर पे पीले रंग की टोपी है वहीं उसको रस्सी से बांधा गया है।

बडा -- सा बोर्ड भी नजर आ रहा है।

तस्वीर में एक रूम नजर आ रहा है| यह एक मॉल है जहाँ पर एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक रूम नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा-सा इमारते नजर आ रही है।

और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आए हुए हैं।